यहाँ पर बोहोत सारे अलग अलग बोहोत सारे जीवों को देखा जा सकता है जो की दो पैरो पे खड़े हुए है यह जीव को--

इसे सफ़ेद रंग से अच्छे से पैंट किया गया है और यह यह शायद प्लास्टिक का बना हुआ है ।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के दूसरी तरफ में भी बहुत सारे पेड़ पौधे को भी देखा जा सकता है सामने के तरफ में--

यह कोई शादी के फंशन का इमेज लग रहा है जहाँ पे एक निचे नीले रेड कलर की अच्छी सी कारपेट बिछी हुई है अगल बगल में रेड एंड वाइट कलर की कुछ --

इनके पीछे की तरफ में एक बहोत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे हेयर के अलग - अलग स्टाइल लगे हुए --

ती है सामने एक बड़ा सा बोर्डे लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी- सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि रेड कलर की है और जिसके दरवाजे के चारों तरफ में कुछ सफ़ेद रंग की बॉर्डर जैसी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।